व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं पीछे साइड काले पर्दे टंगे हुए हैं।

दोनों तरफ से फैलाए हुए हैं आदमी।

बच्चियों के हाथ में दो मोमबत्ती है लेकर खरे हैं।

बत्तख का फोटो चित्र छपा हुआ है।

और रोड है रोड बस खड़ा है आदमी खड़ा है साइड में तार तिरा हुआ है ऊपर साइड में तार तिरा हुआ है।

बहुत बड़ा लंबा चौड़ा में रूम है और ढेर सारे खिड़कियां है।

ऊपर में लिखा हुआ है श्री गणपती स्टोर ।

उसके अंदर ढेर सारे सामान है चश्मा है मैजिक है स्वेटर है नीचे शायद में बैंच कांच का लगा हुआ है सिट्रेपरी है सिट्रेपरी है।

थी में हाथी पानी में है।

ओरम लगे हुए हैं लेडिस जेंट्स लेडिस सारी गहने पहने हुए हैं।

। ऊपर में तार घिंचे हुए हैं टावर हैं

बहुत बरा लॉज है आदमी खड़े हैं लेडिस जेंट्स है दोनों साइड कंबल है।

फूल लगा हुआ है सजावट फूल से बहुत सारा सजावट है।

आदमी खरे हैं एक लेडिस बच्चे हैं और नीचे में चक्क के लगे हुए हैं ढाप चहड़ने वाला लगा हुआ है।

दिवाल में बोर्ड है टीचर पढ़ा रहे है वर्ड लिख रहे हैं।

यह जंगल पहार है पहार दिख रहे हैं ढेर सारे पेड़ पौधे हैं ढेर सारे पोल लगे हुए हैं।